दिखाई दे रहा है जहां पे तंदूरी चाय वाला है और इसमें बहोत सारे कप दिखाई दे रहे हैं जोकि मिट्टी के हैं एक लड़का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक स्कूल दिखाई दे रहा है जहां पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर येलो ऑरेंज है और बहोत सारे पेड़-पौधे --

इस फोटो में मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारे लोग बैठे है चेयर का कलर भूरा है।

और बहोत सारे लोग हैं और नीचे वाइट कलर की रेलिंग लगी हुई है और ऊपर जाली लगी हुई है काली कलर --

और बहुत सारे सामान जमे हुए हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं पत्थर है और --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

इस फोटो में मुझे एक रेस्टोरेंट कैसे दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी चेयर है चेयर का कलर भूरा है और बहुत सारी टेबल लगी हुई है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं ये एक स्टैचू बना हुआ है जिसमे बच्चों ने काले कलर के कपड़े पहने हैं और ये --

और यहां पे बहो परदे लगे हुए पर्दे का कलर भूरा है और एक पतंग फूलों की पतंग बनाई हुई है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और एक लड़का है गाय है और बहुत बड़े बड़े पत्थर है तार है।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

और जिसके बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई--

इस फोटो में मुझे एक स्कूल दिखाई दे रही है स्कूल हॉल दिखाई दे रहा है रूम का कलर --